अअअ बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है तीरथगढ़ जलप्रपात --

फोटो में दीपावली टाइम का नज़ारा दिख रहा है ।

सामने बिजली लगा दिए है सामने बिजली का खम्बा भी दिख रहा है वहाँ रात का टाइम रात के टाइम का है।